यह घर मे बनाई गई है वह उसमें चार अलग अलग प्रकार कि फोर विलर खड़ी है।

यहाँ हमे एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी बसे --

जिसमे थोड़ी घास ऊगी हुई है वह खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

के बीच मे एक मूर्ति बनाई गई है वहाँ उस मूर्ति के बारे मे कुछ लिखा हुआ है।

नज़र आ रहा है जिस पर लिखा है वेलकम टु टूरिज्म --